पीले कलर की और कुछ भी हैं और ये कुछ कपड़े टंगे रहे हैं और कुछ आलमारी में रखी हैं।

ता है और यहाँ पर सही हो जाता है। बहुत पुराना है ये। यहाँ एक बाईक खड़ी है और इसमें अंदर कुछ लोग भी हैं और ये लेडीज़ जा रही हैं।

और ये सामने भी लग रहा है।

और ये दुकानें भी बन रही हैं। बहुत सारी --

ये कुछ लोग बतला रहे हैं। वही पीले कलर में इस वॉल पे लिख रहा है।